चित्र एक बड़े मैदान का नजर आ रहा है जहाँ पर कुछ जगह घास तो कुछ जगह मिट्टी नजर आ रही है।

वे दुकान की शटरका रंग नीला नजर आ रहा है वैह ऊपर की और सीढ़िया भी बनी नजर आ रही है।

कुछ सुखा घास भी लगा हुआ नजर आ रहा है दूसरी तरफ एक कच्ची सड़क भी जाती हुई नजर आ रही है।

वह उस सड़क के आगे कुछ इमारतें भी बनी नजर आ रही है।

नीचे की और सफ़ेद रंग की टाइलों का काम किया हुआ है वे साइड की और कुछ छोटे वे बड़े वृक्ष लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इधर एक बहुत बड़ी दुकान का नजर आ रहा है जहां पर अनेक तरह की वस्तुएँ रखी हुई है कुछ वस्तुएँ खाने और पीने की रखी हुई है।

यह चित्र एक दुकान का नजर आ रहा है जहाँ पर पीछे की और छोटे-छोटे डिब्बों में सामान रखा हुआ नजर आ रहा है आगे की और बोरों में भी सामान भर कर रखा हुआ नजर आ रहा है वह दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यह चित्र एक जिम का नज़र आ रहा है| जिम के अंदर काफी मशीने रखी हुई नजर आ रही है| सामने की ओर लाल नीले व पीले रंग के वेट टायर भी रखे हुए नजर आ रहे हैं नीचे काली कलर का फर्श लगा हुआ है।